meet the gimp में आपका स्वागत है
आज का यह tutorial raw को बदलने के बारे में नहीं बल्कि एक real show करते समय नयी coding करने के बारे में है और पिछले tutorial की कुछ गलतियों को ठीक करने के बारे में है
मैं आपको इस image के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ
show को recording करते समय मैंने कुछ अतिरिक्त बदलाव किये हैं
जैसा आप देख सकते हैं कि समुद्र थोड़ा धुंधला लगता है और इसमें अधिक स्पष्टता के बिना यह केवल gray है और जब मैं यहाँ समुद्र की layer को और अन्य लेयरों को switch off करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि समुद्र में कुछ स्पष्टता है
और जब मैं layer mask को देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने layer mask प्रयोग किया जो उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादातर gray है जो मैं दिखाना चाहती थी
अतः अब इस step को दोबारा redo करते हैं
मैंने समुद्र की layer को मिटा दिया है और background layer की एक copy बना ली है
मैं layer को sea name देती हूँ और उस layer को sky के नीचे और land के ऊपर रखती हूँ
मैं अपनी layer के साथ काम कर सकती थी लेकिन हमें अच्छा परिणाम नहीं मिला क्योंकि मैंने समुद्र को थोड़ा अधिक darker करने के लिए curves tool का प्रयोग किया था
और उसके साथ मैंने सारी रंग की जानकारी को नष्ट कर दिया है जो उस layer में उपस्थित थी और मुझे यहाँ इस तरीके से अच्छा परिणाम मिलेगा
add मैं दोबारा एक layer mask जोड़ती हूँ मैं gray scale copy of the layer प्रयोग करती हूँ और इसे जोड़ती हूँ
मैं show layer mask पर click करती हूँ और layer mask को edit करती हूँ
मैं curves tool प्रयोग करुँगी और मैं इसे नीचे करके वही प्रक्रिया दोहराऊँगी लेकिन इस समय मैं upper curves को upper खींचूँगी
अब मेरे पास layer mask है जो समुद्र और आकाश के क्षेत्र के लिए लगभग सफ़ेद है और भूमि के क्षेत्र के लिए लगभग काला है
यहाँ किसी खोयी हुई संरचना को ठीक करने के लिए मैं brush tool चुनती choose और यहाँ एक बड़ा brush चुनती choose और काले रंग के साथ भूमि के क्षेत्र को पेंट करना शुरू करती choose
मैं काले रंग से समुद्र के क्षेत्र को paint नहीं करना चाहती तो मैं foreground और background रंग को अदलबदल करती हूँ
और समुद्र क्षेत्र पर जाएँ और सफ़ेद रंग से पेंट करना शुरु करें और मुझे लगता है कि मुझे यह थोड़ा कोमलता से करना चाहिए
यहाँ यह क्षेत्र मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है लेकिन आप उसे बाद में this कर सकते हैं
अतः एक मुलायम brush चुनती choose और देखती choose कि मुझे यहाँ यह किनारा अच्छा मिलता है
जब मैं show layer mask को अक्षम करती हूँ तो हम यहाँ भूमि और समुद्र के बीच फ़ैलाया हुआ नज़ारा देख सकते हैं
अब image को zoom करते हैं और आप एक halo halo देख सकते हैं जहाँ layer mask और layer दोनों एक साथ काम नहीं करते और मैं इस पर बाद में कार्य करुँगी
अब मैं shift + ctrl + e के साथ पूरी image पर वापस जाती हूँ
मैं curves tool चुनती हूँ और जाँचती हूँ यदि मैंने layer mask चुन layer है और पूरी image को देखने के लिए sky layer को सम्मिलित करती हूँ और अब मैं image पर click करती हूँ और curves के साथ play करती हूँ
अब आप देख सकते हैं कि समुद्र और भूमि के bit के halo नष्ट हो जाते हैं लेकिन अब समुद्र दोबारा थोड़ा now धुंधला हो गया है
लेकिन मैं यहाँ curve को ऊपर खींच सकती हूँ और मुझे यहाँ साफ़ आकाश दिखाई देता है
और मुझे लगता है कि मुझे इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए
मैं समुद्र पर सूरज की रोशनी बादलों की परछाई भिन्न तरंग संरचनाओं और थोड़ा सा नीला रंग जैसा कि समुद्र पर होना चाहिए देख सकती हूँ
आकाश के किनारे पर चमकदार चीज़ के साथ थोड़ी सी समस्या है क्योंकि आकाश बहुत चमकदार हो गया है और मैं बाद की steps में उस समस्या को हल कर सकती हूँ
ठीक है मैं curves tool के प्रभाव को opacity slider से समायोजित कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छे प्रभाव के लिए मुझे यह थोड़ा कम करना चाहिए
john अर्नाल्ड ने एक tip दी और कहा कि हमें पूरे संभव amount पर जाना चाहिए और फिर slider के साथ नीचे जाती हूँ क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं तो प्रभाव देखना बहुत आसान हो जाता है
और हम आसानी से ठीक amount को निश्चित कर सकते हैं
और मुझे लगता है मैंने इस भाग के साथ बहुत ज़्यादा कर लिया है इसलिए slider को नीचे खिसकाती हूँ और मुझे लगता है यह ठीक है
क्षितिज पर यह चमकदार चीज़ कहाँ से आती है
मैं sky layer को अचयनित करती हूँ और जाँचती हूँ लेकिन यह इस कारण नहीं है
अतः मैं sea layer को deselect करती हूँ और यह sea layer के कारण है
और यहाँ मुझे यह भाग और darken करना है
और वह करने के लिए मैं gradient tool प्रयोग करती हूँ
मैं layer mask चुनती हूँ और अब tool box से gradient tool चुनती हूँ और मैं भूमि के भाग को सफ़ेद और आकाश के भाग को काला करना चाहती हूँ और मैं यहाँ border चाहती हूँ
gradient पूरे सफ़ेद से शुरू और काले से अंत करता है
अतः मैं इस भाग में zoom करती हूँ मैं gradient tool चुनती हूँ और लगभग यहाँ से शुरू करती हूँ
इस line को बनाते समय मैं ctrl की और mouse का बायाँ button दबाती हूँ और एक सीधी line बनाने के लिए खींचती हूँ और यहाँ button छोड़ती हूँ
आप देखते हैं इसने कार्य किया क्षितिज का चमकीलापन चला गया है और आप देखते हैं कि भूमि का layer mask भी चला गया है
अब पूरी image को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बदलाव चले गए हैं
अतः यह क्षितिज के साथ deal करने के अच्छा तरीका नहीं है इसलिए मैं यहाँ इस step को अनडू करती हूँ
अब पहले मैं आयत चुनती हूँ और जाँचती हूँ यदि layer mask चयनित है और आकाश के भाग पर आयत बनाती हूँ
अब आयत बनता है तो मैं इसके अंदर edit कर सकती हूँ और बाकि के layer mask पर कोई असर नहीं पड़ेगा
अब मैं वही प्रक्रिया दोहराती हूँ
यहाँ चमकीले भाग में zoom करती हूँ और layer mask चुनती हूँ
मैं ऊपर काला और नीचे सफ़ेद चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ सीधे ऊपर क्षितिज तक जाएँ और आप देख सकते हैं कि समुद्र सिर्फ सफ़ेद है और भूमि और आकाश काले हैं
shift + ctrl + a से सारे चयन अक्षम हो जाते हैं shift + ctrl + e पूरी image पर वापस जाता है और अब काफ़ी बेहतर है
मैं sky layer को edit करना चाहती हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने land layer के लिए किया था
बस sky layer को double करें और over lay mode पर क्लिक करें
यह कुछ ज़्यादा ही है इसलिए मैं opacity slider को थोड़ा कम करती हूँ और हमारे पास आकाश में थोड़ा ज़्यादा contrast है
और अब मुझे लगता है कि एक चीज़ को छोड़कर image लगभग तैयार है
यहाँ घर की यह दीवार कुछ ज़्यादा ही dark है
यह स्थिति dodging और burning के लिए है
dodging और burning term dark room के दिनों से आती है जहाँ आप enlarger और photographic paper के बीच enlarger की light beam में अपने हाथ को या paper को या किसी अन्य days को रखकर एक picture को चमका dodge कर सकते हैं और burning इसके विपरीत है
आप एक paper लें और एक ख़ास तरह का छेद बना लें और image के कुछ अन्य भागों पर कुछ light को edit करें
कौन सी step कब करनी है यह समझना काफी कठिन प्रक्रिया है और उसके लिए आपको paper की बहुत सी शीट्स की ज़रुरत है और जब आप इस तरह की किसी प्रक्रिया को देखते हैं तो मैं आपको एक film well photographer देखने की सलाह देती हूँ
यह james के बारे में एक film है और एक अँधेरे कक्ष दिखे बिना भी यह एक शानदार film है
मैं वास्तव में आपको इस film की सलाह दे सकती हूँ
अब dodging और burning प्रक्रिया देखते हैं
हमारे पास यहाँ tool बॉक्स में एक dodge और burn tool है लेकिन मैं layer के साथ दोबारा काम करना चाहती हूँ
मैं एक अधिक layer जोड़ती हूँ और मैं इसे सफ़ेद से भरना चाहती हूँ
मैं colour channel पर जाती हूँ और मैं gray के लिए 50% और अन्य channel में 128% रखती हूँ
यह gray रंग 50% gray है और मैं layer mode को overlay करती हूँ और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं होता है
अब मैं रंगों में काले और सफ़ेद पर जाती हूँ और एक brush चुनती हूँ
इस brush का size लगभग this है लेकिन मैं opacity को मानिये लगभग 30% कम करती हूँ
अब मैं निश्चित करती हूँ कि मेरे पास नयी layer चयनित है और foreground रंग को सफ़ेद से और background रंग को काले से बदलें और मैं यहाँ दीवार को paint करना शुरू करती हूँ
और संभवतः आप देख सकते हैं कि compression ने अपना काम कर दिया है और दीवार की सतह उज्जवल हो जाती है
यह प्रक्रिया dodging कहलाती है क्योंकि मैं light को photographic paper पर रख रही हूँ और इसलिए दीवार उज्जवल हो जाती है
जब हम यहाँ layer पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ ज़्यादा सफ़ेद क्षेत्र है और image के अन्य भाग जो थोड़े हल्के हो सकते थे
उदाहरण के लिए समुद्रतट के पास चट्टानें
सबसे बेहतर तरीका image में ज़ूम करना होगा और मैं देख सकती हूँ कि अब मैंने दीवार को ज़्यादा चमकदार बना दिया है और jpeg compression के कारण संरचना लगभग चली गयी है
लेकिन मैं colour को स्विच करके इसे ठीक कर सकती हूँ और इसके लिए shortcut की x की है और यहाँ इसे थोड़ा darker करती हूँ
मुझे opacity slider को थोड़ा नीचे खींचना चाहिए और यह ठीक है
मुझे लगता है क्षितिज बहुत चमकदार है इसलिए मैं उस भाग को paint करने के लिए brush के वृत्त आकर को समायोजित करती हूँ और image के उस भाग को darken करने के लिए काले रंग का प्रयोग करती हूँ
मैं x की के साथ रंग बदलकर image के माध्यम से काम कर सकती हूँ और इसे थोड़ा ज़्यादा चमकदार बना सकती हूँ
मुझे लगता है वह कुछ ज़्यादा ही था और मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ
अतः step को अनडू करती हूँ
आप वो technique देख सकते हैं जिससे मैंने layer बनायी और इसे मध्यम gray और प्रत्येक channel के लिए 128% बनाया और layer mode को बदलकर overlay किया
मध्यम gray और overlay mode कुछ नहीं करते हैं और आप image में सफ़ेद या काले से paint कर सकते हैं
सफ़ेद से पेंट करते समय आप image को थोड़ा सा चमकदार बनाते हैं काले के साथ इसे ज़्यादा गहरा बनाते हैं
मुझे लगता है बदलावों के साथ यह image अब पूर्ण हो गयी है
मैं इस पर दोबारा काम नहीं करुँगी सिवाय इसके कि आज जो मैंने काम किया है आप में से कोई उसमें कोई गलती निकाले
मुझे आशा है कि मैंने वह नहीं किया है और layer को dodge and burn name देती हूँ
आज के लिए इतना ही था
अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें और अधिक जानकारी के लिए
मैं आपसे सुन्ना चाहती हूँ
मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा मैं क्या बेहतर कर सकती थी भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं